इस तीज मै बैगन भी दिखाई दे रहा है ।

यहाँ पर बहुत सारे फैन जैसे दिखाई दे रहे है या फैन बना नया - नया बनता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ देखने मै ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है।

यहाँ एक फूलो की दुकान दिखी रही है। वह फूलो की दुखार आज बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही है और रंग भी रंगे फुले है लाल रंग के पिले रंग के उजले फूल लाल फूल भी है।

यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोड दिखाई दे रहा हैं और हरे - हरे झाड़ी दिखाई दे रहे हैं एक आदमी चलता हुआ नजर आ रहा हैं बहुत सारे हरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर एक प्लेट है और स्पून है बहुत सारे स्पून है और यहाँ पर आइस क्रीम रखे गए है एक प्लेट में ये देखने मै बहुत अच्छे दिख रहे है वेनिला आइस भी दिखा रहा है ये --

और यह ये एक रूम जैसा दिखाई दे रहा है और एक बेड है और उसपर बहुत सरे थकिये रखे गए है और एक लाइट भी दिखाई दे रहा है बहुत ही अच्छा खूबसूरत नजारा है|

यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा वोंडरलोव दिखाई दे रहा हैं और म्युजियम का कुछ पानी जैसा झरना झर रहा हैं और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी छतरी लगायी गयी हैं।

और ये एक बहुत बड़ा जंगल दिखाई दे रहा है और वहाँ पर एक आदमी सेल्फी लेते हुए नज़र आ रहा है बहुत सारा आसमान भी बहुत बढ़िया दिख रहा है।

और यह पर एक दुकान भी दिखाई दे रहा हैं और आदमियों भी बैठे नजर आ रहे हैं और हरे - भरे झाड़ भी दिखाई दे रहा हैं।